आपको इस चित्र में एक बस निलदंड दिख रहा है| वहाँ पे बहुत सारे बसेस है और यहाँ पे कुछ लोग भी हैं।

आपको इस चित्र में ए-तीन दुकाने नजर आ रहे है जिसके ऊपर क्राउन इम्पीरीअल करके नाम लिखा हूआ है।